जहां पे बहोत बड़े पेट्रोल पंप है जिसका कलर नीला सफेद है बहुत सारे खंभे हैं।

इस फोटो में पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है पेट्रोल पंप का कलर व्हाइट है येलो व बहुत सारी मशीनें हैं।

में ग्रीन कलर का पानी है बहोत सारे बत्तख हैं बत्तखों का कलर सफेद है कुछ बत्तख दीवार पर --

इस फोटो में मुझे बहुत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है।

बहोत सारी लाइटस है बहोत सारी बाइक्स है बाइक्स का कलर ब्लैक और वाइट है।

इस फोटो में मुझे ये पेट्रोल पं--

इस फोटो में मुझे क्लासरूम दिखाई दे रहे हैं जहां पे व्हाइट कलर की क्लास रूम्स है सबके ऊपर स्टीकर लगे हुए हैं।

जो की खिड़कियों का बना है जो की कांच का बना है एक कांच का कप दिखाई दे रहा है जो की का --

एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर बहुत सारे कपड़े हैं शॉपिंग है मेकअप के समान हैं।

इस फोटो में मुझे पार्क दिखाई दे रे है जहां पे बहोत सारी घास फूस है एक माल बना हुआ है जो की घास --

पीछे बहोत सारे पेड़ पौधे है बहोत सारे ब--

ब्लू और ब्लैक कलर टी-शर्ट पहनी है इसके हाथ में एक बुक है और इसमें नीले कलर का टी-शर्ट पहना है।